एक सर्विस सेंटर हम देख पा रहे हैनाज ऑटो सर्विसिंग सेंटर कर के नाम लिखा हुआ है यहाँ पे एंड उसके बाद जो है कुछ बाइक्स हम यहाँ पर देख पा रहे है जिनकी सर्विसिंग चल रही है धुलाई चल रही है।

एक बड़ी-सी ग्राउंड की तस्वीर हम देख पा रहे है यहाँ पे प्लेग्राउंड जो की किसी एक मंच के सामने बना है इसके सामने एंड जो ग्राउंड के अंदर देख पा रहे है बच्चो लोग खेल रहे है।

एंड आस-पास पहाड़ वगेरा है वो भी हम देख पा रहें हैं कुछ पत्थर चट्टाने वगेरा हम देख पा रहे हैं। प्रोबबैली ये किसी शाम के समय का तस्वीर है जिस तरीके का समझ में आ रहा है जो कि बहोत सुंदर लग रहा है।

और यह पर जमीन पर टिकाया गया है और उसकी रस्सी को पकड़ के खड़े हुए है पोज़ करते हुए एक शख्स को हम देख सकते हैं पीछे हम देख सकते हैं काफी बड़ी सी नदी है कुछ घाट टाइप का बना हुआ है।